यह तस्वीर एक एसबीआई एटीएम की है। यह एटीएम में दो लोग हैं। यह एटीएम बहोत ही खूबसूरत है।

यह तस्वीर एक आदमी की है तथा वह चाय पी रहा है।